के बाद बहोत अच्छा लग रहा बहोत खूबसूरत लग रहा--

कपड़े कि बहुत बड़ी शॉप --

और एक दुकान है वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ कुर्सी रखी--

ये उसके औजार रखे हुए हैं ड्रम रखे हुए ऊपर सदर का बना हुआ नीचे से सैंपल है।

सेंटर है। वहां पे बहुत अलग-अलग प्रकार की मशीन लगी हुई है।

जिसको भी अपने अपने एक्सरसाइज करके अपना शरीर को फिटिंग रखना साहब हो जाता हैं।

कटिंग्स है एक शॉप है वहां पे अलग अलग डिजाइंस --

एक बहोत बड़ी दुकान है उस दुकान में अलग अलग प्रकार के बेड बनते हैं।